बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं जिसमें से एक वाइट कलर का बिल्डिंग है ऊपर तार बहुत सारे दिख रहे हैं।

शादी का मंडप है बहुत बड़ा मंडप है बगल में कुर्सी लगाए हुए हैं।

एक बगल में सोफा स लगे उसके ऊपर भी चादर लगा है बो दो लड़के दिख रहे हैं बगल में एक बहोत बड़ा पेड़ है उसके ऊपर आसमान है।

उसमें एक नीचे कुर्सी रखा हुआ है आगे काउंटर है बहोत दिन--

और डैम को ऊपर सीढ़ी बना हुआ दिख रहा है।